रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान दिखाई दे रही है.

काफी सारे दिखाई दे रहे हैं और इसके रेक में बहुत सारे--

ऑफिस या फिर प्रैक्टिकल रूम दिखाई दे रहा है जहां पर--

सूक्ष्म दर्शी द्वारा देखने वाला एक मशीन भी लगा हुआ है.

काफी खुला हुआ दृश्य दिखाई दे रहा है.

जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति का एक फोटो भी लगा हुआ है और टी_वी पर--

एक नए बने हुए मकान का दृश्य दिखाई दे रहा है.

ड्रिल मशीन लिए हुए हैं और जमीन की दुड़ाई खुदाई करता हुआ दिखाई दे रहा है.

ऐसा लग रहा है जिसका रूम का अंतिम रूप देने के लिए यह काफी सारी--

मरम्मत करता हुआ एक मिस्त्री दिखाई दे रहा है इसका आगे का चक्का के ऊपर का बॉडी में--

कुछ करता हुआ मजदूर दिखाई दे रहा है जिसके हाथों में कलर लगा हुआ है.

बत्ती भी टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके सामने--

कृषि कीटनाशक केन्द्र का एक दुकान दिखाई दे रहा है।

और इस दुकान के बगल में एक सुदर्शन लिखा हुआ भी बोर्ड लगा हुआ है.

मछलियों को पालन पोषण करने वाला--

मछलियां भी उसमें रहकर तैरती रहती है शो केस बनाया गया है.

दो वृक्षों के बीच में रस्सी का एक--

चलता फिरता पुल बनाते हुए दिखाई दे रहा है और उस पुल पर एक व्यक्ति चल भी रहा है.

दूर स्थित दिखाई दे रहा है ऐसा देखने से मालूम चलता है कि सुबह का यह एक दृश्य है.

धुंध गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसा गिरते हुए दिखाई दे रहा है.

नई मोटरसाइकिल बाइक का यह एक शोरूम दिखाई दे रहा है जहां पर लिखा हुआ है इट्स --

नंद ट्रेडर्स के बगल में जॉनसन इंटरनेशनल --

एक गुबारे का गेट बना हुआ है ऐसा देखने से मालूम चलता है कि--

फुटबॉल खेलने वाला दो गोल बना हुआ है.

किसी ऑफिस का यह एक दृश्य दिखाई दे रहा है जहां पर लोहे से बनी हुई काफी सारी कुर्सियां लगी हुई है।

और तीन-तीन कुर्सियों का एक-एक जॉइंटेड कुर्सी लगा हुआ है.

डांस का पोज देती हुई दिखाई दे रही है ऐसा लग रहा है कि जैसे वो--

स्टेज पर प्रोग्राम कर रही है और वह डांस करती हुई काफी सुंदर और--

सजीद दिखाई दे रही है और ये लाल कलर का ड्रेस पहनी हुई है.

इधर अब अगल-बगल में जूस की बोतल रखी हुई है जो मैंगो जूस बोला जाता है इसके अलावा लिपस्टिक की भी रखी हुई है.

और इस पूरी दृश्य को किसी दूसरे मोबाइल वाले ने कैद कर लिया है और यह लड़का अपनी एक हाथों को चेयर पर रखे हुए हैं और अपनी बॉडी को--

ऊपर में एक पीले कलर की टैंक भी लगी हुई है जो प्लास्टिक की है.

उसमें दो तीन व्यक्ति बाहर निकलते हुए दिखाई भी दे रहे हैं.

इसमें सिक कबाब दिखाई दे रहा है और एक प्लेट में काफी बड़े-बड़े पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह दिखाई दे रहे हैं यानी--

जहां पर पेशेंट बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए.

और काफी सारा स्ट्रीट लाइट लगा हुआ दिखाई दे रहा है यह बिल्डिंग देखने से पता चलता है कि किसी मेट्रो सिटी का या एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है यानी काफी बड़ा बिल्डिंग है।

ये एक योग स्थल का दृश्य दिखाई दे रहा है.

झोपड़ी नुमा आकृति बना होता है जिसमें योग हुआ करता है उसी तरह का ये योग स्थल दिखाई दे रहा है बिल्कुल नए कंडीशन में बन रहा है।

मालूम चलता है कि ये साइबर कैपे है.

और वर्किंग करने के लिए यहां पर काम करने के लिए ऐसा एक ऑफिस बनाया गया है.

फोटो दिखाई दे रही है और यह हवेली जो लग रहा है।

एक सड़क का सीन दिखाई दे रहा है.

सड़क पर ढेर सारी गाड़ियां इधर से उधर जाती हुई दिखाई दे रही है.